इस फोटो में मुझे एक टेबल दिखाई दे रही है।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

यहां मुझे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

यहां मुझे पंख दिखाई दे रहा है।